एक ग्राउंड दिख रहा है जहाँ पर ढ़ेर सरे बच्च --

आस पास ढ़ेर सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे है छोटी छोटी घासें भी उगी हुई दिख रही है।

लकड़ी की बल्लियाँ लगी हुई नजर आ रही हैं।

ढेर सारे टेबल और कुर्सियाँ रखी हुई दिखाई दे रही हैं ।

खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं एक खाली मैदान दिखाई दे रहा है यहाँ पर अंधेरा दिखाई दे रहा है ।

दूर पे एरोप्लेन भी दिखाई दे रहा है।